मुझे इस फोटो मे समाने खडे हुए मस्जिद बनी हुई दिखाई दे रही इस मस्जिद मे--

जो टाइल्स वॉल्स लगे दिखाई दे रही देवालों में। व्हाइट कलर कि लाइटिंग वाईटिंग जलती हुई दिखाई दे रही सामने--

टमाटर वमाटर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर दिन का समय दिखाई दे रहा है सामने रखे दिखाई दे रहे हैं लाल--

दिवाल ईवॉल बनी हुई दिखाई दे रही हैं किधर--

पंखे-वंखे लगे हुए दिखाइ दे रहे हैं ऊपर के पंखे इधर खिड़कियाँ गेटे लगे हुए दिखाये दे रहे हैं।

कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रे हैं दिन का समय दिख--

दवाई डेट बने हुए दिखाई दे रहे हैं सामने बनाई हुई दिखाई--

दामन की रोड और बनी हुई दिखाई दे रही है सामने नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

आजू आजू बाजू इधर खंभे उम्भे गड़े दिखाई देखे थे लोहे की रेलिंग वेलिंग लगाई गई है सामने कितना इंसान घूमते भागते हुए दि--

इधर खिड़कियां गेट वेट लगे हुए दिखाई दे--